और गार्डन दिख रहा हैं हरा हरा और वहाँ पे कुछ चीज़े भी दिख रही--

एक घर है कच्चा बना हुआ वहाँ पर कुछ जेंट्स ठहरे हुए हैं जो शूटर वगेरा पेहन रहे हैं और घर पर कुछ छपरे बोर्ड टंगे हैं ।

एक टेन्ट बना हुआ है। वहाँ पर कुछ लेडिसें डांस कर रही हैं। लाइट लगी हुई है। बक्सा रखे हुए हैं।

नीचे फर्श बिछा हुआ है। जो जेन्ट्स है वो ढोलक बजा रहा है।

और रोड के नीचे ऊपर पुल है। रोड पेर नीचे से समुन्द पानी जा रहा है। बादल दिख रहे हैं। पेड़े भी दिख रहे हैं।

बड़ा पहाड़ है जिसमें कुत्तों लोग जेंट्स दिख रहे हैं एक को उ-प-म उसके पा बाजू में है पास में ही है जो बंद उंगली सी बता रहा है उसके हाथ में एक अंगूठी है।

और वहां पर एक लकड़ी पड़ी हुई है दिख रही है और कुछ बादल भी दिख रहा है|